ये पिक्चर में हमें दो आदमी देखने मिल रहा है।

काला आदमी ने ब्लू जींस ब्लू चप्पल पहना हुआ है।

उसके सामने ब्लैक कलर का टेबल रखा हुआ है।

आगे में ग्रीन कलर में छोटा छोटा ग्रास देखने मिल रहा है पीछे में बड़ा बड़ा पहाड़ देखने में मिल रहा है।

राइट साइड में सीट में बैठते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है।

ये घर व्हाइट कलर में दिख रहा है।

में बहुत सारे लोग खेल रहा है।

के पीछे ब्लू और व्हाइट कलर का पेंडेन दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे चेयर टेबल दिख रहा है।

दीवार सिलिंग सब व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है लाइट भी जला हुआ है फैन भी है।